इस फोटो में एक सुंदर पहाड़ी से नदी आती हुई दिख रही है।

जो फ्रेश वेलकमिंग लुक दे रहा है बिल्डिंग के सामने एक ट्री है जो नेचुरल सेट प्रोवाइड करते हैं।

जमीन पर हरा भरा घांस है और आसपास बहुत सारी झाड़ियां और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में एक खुला इलाका दिख रहा है जहां कुछ घर और एक सड़क दिखाई दे रही है जमीन पर सूखी घास और पत्थर है और बैकग्राउंड में एक बड़ा पहाड़ है।

एक आदमी घर के वेरिनडा में खड़ा दिखाई दे रहा है घर की बनावट और रोशनी शांत है।

एक आदमी बिल्डिंग के पास खड़ा है आसमान साफ और नीला दिख रहा है।

और हल्के रंग के टाइल्स से बने हुए हैं।

इमेज में आस पास हरे भरे खेत भी दिखाई दे रहे हैं दूर एक मोबाइल की टावर भी दिख रही है।

दूर पर एक आदमी चलता हुआ नजर आ रहा है और एक कार भी पार्क है।

इस पिक्चर में एक स्टेज दिख रहा है स्टेज के ऊपर एक आदमी और एक औरत अपने हाथ में माइक पकड़ के खड़े हैं।

रास्ते के बाई तरफ एक ऊंची पहाड़ दिखाई दे रही है पहाड़ों पर हल्की घास भी नजर आ रही है।

कुछ सिलैब्स पर उं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी रखे हुए दिख रहे हैं।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

इस इमेज में एक छोटी सी घर दिख रही है।

सड़क पर एक ऑटो रिक्शा भी खड़ी है।

फोटो में एक छोटी सी लोकल ढाबा टाइप की जगह दिख रही है जिसका नाम सूरज ढाबा है यह एक वुडन स्ट्रक्चर में बना हुआ है।

पीछे कई लोग जिम मशीनस पर एक्सरसाइ करते नजर आ रहे हैं।

छत पर लाइट्स भी लगे हुए दिख रहे हैं।

पीछे बैकग्राउंड में हरे पेड़ भी दिख रहे हैं।